बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं सामने अमूल पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां अंदर एक टी_वी लगी हुई है लोग खड़े हुए हैं।

बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं।

गुरुद्वारे में सफेद रंग की दीवारें दिख रहे हैं।

बना हुआ लिखा हुआ है और कई सारे लाइटों से वेलकम सिटी ऑफ फ्लेक्स लिखा हुआ है।

कुछ पेड़ पीछे दिखाई दे रहे हैं।